श्री नाथ जी बेकर्स वाह! कितना शानदार बोर्ड है और कितनी शानदार है उसके बाहर की डेकोरेशन ।

बोर्ड प्लस फाउंडेशन और ऐसे ही निचे लाल क रंग के बोर्ड पर यही लिखा हुआ है। लगता है यहाँ बच्चो की कोचिंग दी जाती है।

इस तस्वीर मे हमे कम से कम छे से सात बसेस दिख रही है और एक बड़ी सी गाडी भी नजर आ रही है।

तो एक सुखा हुआ पेड़ नजर आ रहा है और जिसके सारे पत्ते निचे गिरे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें दोपहर का एक दृश्य खाली रोड जिस पर से चार पांच बाइके हैं।

और दाई तरफ से आती हुयी एक बाईक जिस पर एक आदमी है और उसने हेलमेट भी लगाया हुवा है और पीछे एक पीले और हरे रंग का ओटो भी दिख रहा है।